इस फोटो में बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं तथा सामने बहुत बड़ा मैदान दिख रहा है वह सभी आदमी बैठे हुए हैं तथा उनके सामने एक डंडा --

इस फोटो में राधा एवं कृष्ण दिख रहे है यह फोटो बहुत अच्छी दिख रही है तथा नीचे की तरफ वह लाल रंग की एक टेबल पर रखी हुई--

फोटो एक सड़क का दिख रहा है जिसमें आती जाती बाइक एवं गाड़ी दिख रही हैं।

इसमें एक पनीर एव नीचे की तरफ प्याज पड़ी हुई है तथा बराबर में एक नीबू आधा कटा हुआ पड़ा हुआ है।

इस फ़ोटो में बोहोत सारे खाने की चीज़ टंगी हुई दिख रही हैं जिसमे कुछ मैगी दिख रही हैं तथा बराबर में एक हरे रंग का ताड़ दिख रहा है।

फोटो में एक औरत दिख रही है जिस ने साड़ी पहन रखी है। उसकी साड़ी का रंग पीला दिख रहा है त --

एक आदमी उस घर के अंदर आता हुआ दिख रहा है। बाइक वाले आदमी ने सफ़ेद रंग की शर्ट पहन रख --

तथा कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे हैं एवं उनके ऊपर कुछ पच्छी जाते हुए दिख रहे हैं तथा नाव के बराबर में भी एक नाव दिख रही है जिसमें एक बुजुर्ग लोग बैठे हुए --